कलर दिख रहा है रेड कलर दिख रहा है व्हाइट कलर दिख रहा है उम मशीन --

व्हाइट कलर की चा दर दिख रही हैं। पड़ा हुआ है। एक जानवर कलर दिख रहा है।

पुल है। मकान व्हाइट कलर का दिख रहा है। बिल्डिंग दिख रही है।